और भी बहुत सारे एक स्टूल है रखा हुआ है लाइट जल रही है एक व्यक्ति हुआ है एक बैठा हुआ है पीछे जीना बना हुआ है जाने के लिए।

यह एक कोचिंग सेंटर है जहां पर योगा क्लासस सिखाई जाती है यहां पे कुछ महिलाएं योगा सीख रही हैं।

यहाँ एक खेत हैं जहाँ पे गेहू मशीन से निकले जा रहे हैं कुछ लोग भी बेठे हुए हैं और कुछ बोरियां रखी हैं जिसमे गेहू हैं और ट्रॅक खड़ा हुआ हैं

नीचे पत्थर की धर्ती बनि हुई हैं बाजू मे कुछ समान रखा हुआ हैं प्लास्टिक का सामने एक बैनर भी लगा हुआ हैं अंदर धूप आरा ही हैं बाहर से--